मैं अपने घर वालों के साथ--

लाइब्रेरी में किताबों का जखीरा होता है। यहां पर हर किस्म की किताबें होती हैं।

दोस्तों को दावतें देते हैं।

मर्ज के मुताबिक दवा बता कर खरीद सकें।

अपनी मन्नतें और मुरादें लें।

पूरी करते हैं फिर इनको जड़ा वे चढ़ाते हैं नियाज बांटते है।

ताकि वो वो उनके घरों को अच्छे से और खूबसूरत तरीके से बना सकें।

जो लोग वफात पा जाते हैं उनको कब्रिस्तान में दफन किया जाता है और --

दफन करने के बाद इन के कब्रों को --

इतनी खूबसूरत जगह है।

जिससे वो तालीम हासिल करके कुछ न कुछ आगे अपने मुस्तकबिल के लिए कर सकते हैं अब --